एक काफी हेल्दी हैं लेडी आई थिंक दो बच्चियां हैं बच्ची भी योगा कर रही हैं।

इसपे लिखा है मां नगीना काम्प्लेक्स काम्प्लेक्स पे है ये।

ये एक आंध्रा बैंक का ए.टी.एम. है जो कि बंद पड़ा है और नीचे ऐसा लग रहा है जैसे कूड़ा करकट पड़ा है।

यह भी एक जिम हैं इसमें बहुत सारी मशीनें लगी हैं एक्सरसाइज की --

ये एक कैंपस है जहाँ पे किसी ने ड्रॉ कर रखा है।